और एक दो मोटरसाइकिल पास में खड़ी है इस प्रकार इस तस्वीर को दर्शाया गया है।

ये तस्वीर बहोत बड़ी गौशाला की लग रही है जिसके अंदर बहोत सारे गया बैठी है।

हरियाली लग रही है बहोत ही हरा भरा जंगल है।